एक मछुआरा है जो मछली बेच रहा है।

और ये क्रेट है तराजू है।

पार्किंग है कुछ अशोक के पेड़ हैं। कुछ फुलवारी है।

और लाइट लगी हुई है आगे --

ये पुराने खंडर जैसा है।

उसी पे से ये धुत --

और जे ईट के रोड़े दिखाई पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सूखे पेड़ हैं कुछ हरे पेड़ हैं।

एक बाइक खड़ी है तीन लोग हैं यहाँ --

एलिफैन्ट ही जैसा इसका गेट भी है।

ये एक दुकान है। इसपे मोटी-मोटी रजिस्टर मिल रहे हैं।

यहाँ पे कुछ लेडीजे हैं। कुछ जेन्ट्स हैं जो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं।

पेड़ पौधे हैं। काफी अ --